यहाँ पे होटल और सजावट है। इंसान ठड़ा हुआ है और लाइट -उट लगा हुआ है। डेकोरेशन अच्छा-सा है और दीवार-उवार है।

यहाँ पे कोई थरा हुआ है और ये जगह भी साफ-सुथरा सा है और टेबल पे किताब कॉपी रखा हुआ है और बच्चा --

लगा हुआ है और ये घर है यहाँ पे लम्बा-लम्बा पिलर है और छत है और